और एक खिड़की दिखाई दे रही है।

पीछे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है और यह लड़का सेल्फी ले रहा है और --

यहां कुछ जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बस दिखाई दे रही हैं।

हॉल दिखाई दे रहा हैं जहां पर--

दे रहे हैं कुछ ट्रैक्स दिखाई--

दे रही है और बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

और बहोत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

ये बिल्डिंग अभी रिपेयर हो रही है।

कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है जो अंदर के ओर जा रहा है।